तीन ठो अदमी लगा हुआ है काम पे।

यहाँ पे देखिए कितना बड़ा समुन्द्र है।

अच्छा लग रहा है देखने में बोलब औलब लगा हुआ है।

फल का है यह दुकान इसमें अनार है केला है काला अंगूर है सेब है संतोला है दुकान नहीं दिखाई दे रहा है।

चम्‍मच भी है तीन ठो।

यहाँ देखिए पारक का अंदर का कितना लम्बा-लम्बा गाछ सब है।

एकठो यहाँ पर हॉस्पिटल है देखिए नेट सब लगा हुआ है मशीन ओसिन भी है डॉक्टर भी है।

कॉपी कलम किताब का मन है ले आता है आदमी पढ़ने लिखने वाला ले आता है।